मार्केट गया है मार्केट दिख रहा है मार्केट में एगो बंधन बैंक है।

एक क्लास रूम है क्लास रूम बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे बच्चियां एक मैडम है जो क्लास रूम को बहुत प्यार करते हैं और बच्चे बैठे हुए हैं शायद एग्जाम दे रहे हैं।

ये पुल अच्छे से बना हुआ नही है ये चढ़ा हुआ है और लोग गांव का लोग जो है बास बना के आर पार होते है इसी मे मोटरसाइकिल बाइक करते हुए वह पुल अभी तक क्लीयर नही हुआ है और पानी भी है बहुत सारे --